जो की क्रिकेट खेलने आए हैं यहां बहुत ही अच्छा लगता है।

चीजें लिखी हुई हैं और यहां पर गेट है और कुछ--

बोतल है पानी पीने की और यहां पर।

पिंक कलर की शटर है और यहां पर बहोत ही समान दिखाई दे रहा है और यहां पर--

यह पेट्रोल टैंक का फोटोज हैं यहां पर एक व्यक्ति जा रहे हैं और एक व्यक्ति खड़े हैं बीच में कुत्ता--

और भी बहोत सारी मशीने अन्दर दिखाई दे रही है।

यहां पर किसी का मकान बन रहा है और उसका छत डर रहा है यहां पर बहोत सारे आदमी हैं।

और भी कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।